यह एक बहुत ही हमें अच्छा सा स्कूटी का इमेज दिखाया --

यहाँ एक अच्छे से ईंट से इससे अच्छे से ढाला गया है ।

यहाँ एक तारामांझी भी है जो बच्चे लोग बहुत ही बैठना इसमें पसंद करते हैं और यह बहुत कम दामो में यहाँ बच्चो को घुमाया जाता है।